बहुत ही बड़ी नदी देख रहे हैं इसके अगल बगल काफी हरियालियां हैं और यहां पर बिजली के--

यह देखने में काफी सही है।

यहां पर कई प्रकार की सब्जियां मौजूद हैं जैसे कि टमाटर हरी मिर्च भिंडी--